कुछ पोल लगे हुए दिख रहे हैं। पेड़ नजर आ रहे हैं। पहाड़ दिख रहा है।

इस इमेज में हमे कुछ लोग योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। एसी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में हमे लाइफबॉय का सेनेटाईज़र रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में हमें दो व्यक्ति खड़े तथा बहुत --

और दुकानों के शटर गिरे नजर आ रहे हैं।